लाइटिंग लगाई हुई है जो लाल कलर की है बहोत सारे लाइटिंग है और यहां पे टेबल के ऊपर ग्लास रखें हुए हैं।

ये एक रूम है। इस रूम में यहां पे एक टेबल है बेड सोने के लिए जो पेशेंट के लिए है। मशीने हैं बहुत सारे।

और यहां पे दीवाल है दीवाल का कलर है वाइट कलर एक रास्ता जाने के लिए जो बंद है दरवाजा और यहां पे लाइट है।

बहुत सारे खेत हैं जो यहाँ पे हरि हरे भरे भी हैं और आसमान नीला है आसमान में जो नॉर्मल बादल भी नज़र आ रहे।

और यहां पे एक स्टेज सजाकर इन सब को यहां पे रखा गया है औ--

चेयर पे है और यहाँ पे एक आदमी है जो कैमरा लेके भी ठहरा हुआ है और यहाँ पे लेडीज भी है।

बेठे हुए हैं घर में और यहाँ पे है जो सूखने डाले हुए है कपड़े और यहाँ पर डिजाईन बनाया गया है।

यहाँ पे एक दूकान है और इस दूकान में एक रैक है जो उस रैक के में--

और यहाँ पे काली कलर पीछे साइड में है।

टू इन्टू टू ए_ सी स्लीपर कोच लिखा गया है यहाँ पे और यहाँ पे भी लिखा गया है के सामने है दो --

ये पुराने ज़माने की तरह बनाया गया है और यहाँ पे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं और यहाँ--

और यहाँ पे चलने के लिए रास्ता है और यहाँ पे वायरिंग है जो एक घर में जाते है और यहाँ पे है।

और चॉकलेटी कलर का है और एक के ऊपर एक के ऊपर रखा गया है।

खिड़कियां हैं जो कांच की हैं ब्लैक कलर की और इस बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी ठहरा है।

इसमें छोटे छोटे छोटे हरियाली आई हुई हैं और इसे कंपाउंड मारा गया है।

वो डिजाइन किया गया है और यहाँ पे है देवो जो हिंदी धर्म का यहाँ पे देव है जो यहाँ पे--

यहाँ पे एक बड़ा सा दूकान है इस दूकान में टायर रखे गये हैं टायर हैं।

यहाँ पे है एक बड़ा सा महल की तरह दिखने वाला एक होटल है और यहाँ पे सामने से बहुत सारे गाड़ियाँ--

है और यहाँ पे आसमान में बादल हैं थोड़े से आसमान नीला नज़र आ रहा है और यहाँ पे पेड़ भी हैं।

और यहाँ पे ट्रक आ रही है टू व्हीलर जा रही है फोर व्हीलर भी जा रही है और यहाँ पे भी है।

यहाँ पे टोल नाका है तो यहाँ पे है लिखा हुआ हैवे टेल न टोल नंबर वन टोल नंबर टू लिखा गया है।

और उसको यहाँ पे देख रहे है और यहाँ पे धूप भी नज़र आ रही है ।

और यहां पे आसमान नीला नजर आ रहा है और यहां पे कैमरे भी रखा लगाए हुए हैं।

यहाँ पे एक किचन रूम है जो यहाँ पे किचन रूम में एक खिड़की है और यहाँ पे एक ऊपर साइड है जो बॉक्सेस --

एक ट्रे है जो प्याज़ रखने के लिए है और यहाँ पे स्विच बोर्ड भी है और यहाँ पे दीवाल का कलर है थोड़ा सा व्हाइट और यहाँ पे--

और ये कपड़ों की दुकान जो साड़ियाँ हैं अलग अलग एक औरत यहाँ पर ठहरी हुई है काउंटर टेबल पर और दो आदमियाँ भी बैठे हुए हैं।

यहाँ पे एक दुकान है और इस दुकान में यहाँ पे रखा गया है अलग अलग प्रकार के यहाँ पे बॉक्स हैं और शो के फूल भी हैं यहाँ पे।

जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे पाइप लाइन भी किया गया है जो पानी के लिए है।

और साइड में एक छोटा सा घर भी है और यहाँ पे सामने दो खेत है खेत में भी घर है।

खेत हरा भरा है और यहाँ पे आसमान नीला नज़र आ रहा है और धूप भी है जो थोड़ी आ रही है।

पिंक कलर और जामुनी कलर का यहा पे फूल बनाये गये हैं।

और सामने एक बड़ा सा मैदान है जो यहाँ पे हरा भरा है और खेलने के लिए भी यहाँ पे है।